यह मुझे एक बहुत ही बड़ा दुकान दिख रहा है जिसमें कई प्रकार के सामान रखे हुए हैं।

सफेद काला और हरे रंग के दिख रहै है जहाँं आसमान सफेद और काला हो नीचे जमीन हरे रंग की बहुत ही खूबसूरत दिख रही है यहाँ पर सुंदर नज़र आ रहा है।